इस चित्र में मुझे एक दुकान दिख रही है।

एक लोक सेवा केंद्र कटनी सहर का--

इसके सामने एक बाइक खड़ी है और--

कुछ खाने का रखा गया है बगल में सलाद भी रखी गई है।

कुछ झूला लगा है और एक खम्भा भी है।

और जाने के लिए एक गैलरी टाइप --

इस चित्र में मुझे एक निमस फैशन नाम की--

बिलिंग काउंटर पर बैठा है उसके जस्ट सामने पिलर के बगल में बहुत सारी--

चित्र में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

काम के बारे में मीटिंग दे रहा है।